नमस्कार दोस्तों
netbeans ide का उपयोग करके handling images in a java gui application पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
हम समझते हैं कि आपको netbeans की सामान्य जानकारी है
हम समझते हैं कि आपको jframe form पर text fields buttons menus आदि का पता होगा
यदि नहीं तो कृपया netbeans पर संबंधित tutorials के लिए spoken tutorial की website पर जाएँ
इस tutorial में हम images को हैंडल करने के बारे में विस्तार से सीखेंगे
और sample gui application में उन पर कार्य करेंगे
इसके लिए मैं लिनक्स operating system ऊबंटु 1104 और netbeans ide 711 का उपयोग कर रही हूँ
java application में images को handle और access करने के लिए getresource method का उपयोग करना मानक तरीका है
हम सीखेंगे कि अपने application में code को images के साथ तैयार करने के लिए ide s gui builder का उपयोग कैसे करें
और एक image प्रदर्शित करने के लिए jlabel के साथ एक सरल jframe कैसे बनाएँ
इस tutorial में हम सीखेंगे
application form बनाना
image के लिए package को जोडना
label पर image को प्रदर्शित करना
mouseevents और popups बनाना
application को बनाना और रन करना
अब अपने sample application को बनाने के लिए ide पर जाते हैं
file menu से new project चुनें
categories के अंदर java चुनें projects के अंदर java application चुनें और next पर click करें
project name field में type करें imagedisplayapp
create main class चेकबॉक्स को खाली करें
निश्चित कर लें कि set as main project चेकबॉक्स चयनित है
finish पर click करें project आपके ide में बन गया है
इस भाग में हम jframe form बनायेंगे और form के लिए jlabel जोडेंगे
पहले jframe form बनाते हैं
projects window में imagedisplayapp node को खोलें
source packages node पर right click करें औऱ new jframe form चुनें
class name field में type करें imagedisplay
package field में type करें org me myimageapp
और finish पर click करें
add jlabel को जोडते हैं
palette में ide की दाईं तरफ label component को चुनें और jframe पर खींचे
अभी के लिए अपका form कुछ इस तरह का दिखना चाहिए
जब आप application में images या अन्य resources का उपयोग करते हैं आमतौर पर आप resources के लिए अलग java package बनाते हैं
package local file system में package folder के साथ मेल खाता है
projects window में org me myimageapp node पर right click करें और new> java package चुनें
new package wizard में org me myimageapp के लिए resources जोडें
अतः नये package को अब org me myimageapp resources कहा जाता है
finish पर click करें
projects window में आपको org me myimageapp resources के भीतर image दिखाई देनी चाहिए जब आप image जोड़ते हैं
application में image को jlabel component के भीतर अंतःस्थापित किया जायेगा
add label में image को जोडते हैं
gui designer में label चुनें जिसे आपने form के लिए जोडा है
properties window में palette के नीचे window के दाईं तरफ icon properties पर scroll करें
ellipsis या दाईं तरफ तीन dots पर click करें
icon property dialog box में import to project पर click करें
file chooser में अपने image वाले folder में navigate करें जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं
next पर click करें
wizard के select target folder पैज में resources folder को चुनें
और finish पर click करें
finish पर click करने के बाद ide आपके project में image को copies करता है
इसलिए जब आप application को बनाते और रन करते हैं image वितरण योग्य jar file में शामिल हो जाती है
यहाँ ok पर click करें
और अपने project node पर right click करें औऱ clean and build विकल्प चुनें
अब आप files menu में जा सकते हैं और build folder के अंदर
dist folder के अंदर आप jar file देख सकते हैं
यह imagedisplay class में image को access करने के लिए code को तैयार करता है
यह आपके form के design view में label पर आपके image को भी प्रदर्शित करता है
इस स्तर पर आप form की दिखावट में सुधार करने के लिए कुछ सरल चीजें कर सकते हैं
properties window में text properties चुनें
औऱ jlabel1 डिलीट करें
वह value gui builder द्वारा label के लिए प्रदर्शित text के रूप में तैयार की gui थी
हालांकि आप text के बजाय एक image प्रदर्शित करने के लिए label का उपयोग कर रहे हैं
अतः इस text की आवश्यकता नहीं है
अब label को form पर बीच में लाने के लिए खीचें
gui designer में source टैब click करें
line के लिए नीचे scroll करें जो दर्शाती है generated code
code को प्रदर्शित करने के लिए generated code line के बाईं ओर plus sign + पर click करें जिसे gui designer ने तैयार किया है
यहाँ कीलाइन यह है
क्योंकि आपने jlabel1 icon property के लिए property editor का उपयोग किया है तो ide ने seticon method तैयार किया है
उस method का parameter imageicon के एक नामरहित आंतरिक class पर getresource method के लिए एक कॉल शामिल करता है
एक बार आपकी image जुड गयी design view में image पर right click करें
events> mouse> mouseclicked पर click करें
view source mode में चला जाता है
यहाँ आप mouse click पर अपने कार्य को अनुकूलित करने के लिए code code सकते हैं
popup तैयार करने के लिए code की कुछ लाइनें code जब image gui में clicked किया जाता है
मैंने अब popअप तैयार करने के लिए code की कुछ लाइनें प्रविष्ट की हैं
पहले मैंने popup के लिए एक नया jframe बनाया
और मैंने डिफॉल्ट क्लोज़ ऑपरेशन set किया
औऱ and में popup के लिए text प्रदान किया
code की इन लाइनों को जोडने के बाद फ़ाइल की शुरुआत में दो statements को जोड़कर आवश्यक packages import करें
import javax swing *;
और import java awt *; जोडें
यह इस program के लिए आवश्यक जरूरी packages को import करेगा
अब application को बनाएँ और रन करें
हमने image को एक्सेस और प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया है
image accessed हुआ है कि नहीं सुनिश्चित करने के लिए application को बनाएँ औऱ रन करें
सबसे पहले main project main class set करने की आवश्यकता है
जब आप main class set करते हैं तो ide जानता है कि किस class को रन करना है जब आप project को रन करते हैं
इसके अलावा यह सुनिश्चित करता है कि application jar file में main class element तैयार होता है जब आप application का निर्माण करते हैं
यहाँ project window में imagedisplayapp project node पर right click करें और properties चुनें
project properties dialog box में बाईँ ओर run श्रेणी चुनें
browse button पर click करें जो कि main class field के बाद है
org me myimageapp imagedisplay चुनें और select main class पर click करें
यहाँ ok पर क्लिक करें
अब project node पर right click करें औऱ clean & build चुनें
आप files window में application की build properties को देख सकते हैं
build folder compiled class को सम्मिलित करता है
dist folder एक निष्पादन योग्य jar file सम्मिलित करता है जिसमें कंपाइल class औऱ image शामिल है
अब tool bar से run चुनें
हमारा output window image के साथ खुलता है
मैं अब इस image पर click करुँगी
और आप popup को शीर्ष पर देख सकते हैं जो image के विवरण को दिखा रहा है
अब नियत कार्य के लिए
चार images के साथ एक अन्य gui बनाएँ जैसा कि इस tutorial में दिखाया गया है
प्रत्येक images के लिए विभिन्न events निर्दिष्ट करें जैसे keyboard event mousemotion event mouseclick event mousewheel event
मैंने पहले ही नियतकार्य बना दिया है
नियतकार्य project को रन करें
आपका नियतकार्य कुछ इस तरह से दिखना चाहिए
मैंने यहाँ अपने नियतकार्य के लिए keyboardevents और mouse events बनाया है
अतः संक्षेप में
हमने jframe form बनाया है
image के लिए package जोडा है
label पर image प्रदर्शित की है
औऱ mouse events और popups भी बनाया है
screen पर दिखाए गए link पर उपलब्ध video देखें
यह spoken tutorial को सारांशित करता है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
अधिक जानकारी के लिए contact @spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें